जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहां पर काफी बड़ा अ गार्डन है जिसमें कि बोहोत सारे फूल लगे हुए हैं। अच्छे-अच्छे फूल लगे हुए हैं। गेंदे के फूल हैं।

आ जैसे की हम देख रहे है यहाँ एक सब्जियों स-सब्जियों की शॉप है जहाँ पर काफी सारी सब्जियाँ रखी हुई है जैसे की भिंडी है शिमला मिर्च है खीरा है गाजर है सक्--शकरकंदी है बैगन है ।

आ जैसा की हम देख रहें हैं यह एक स्टेशन है और यहाँ पर रेल की पटरी जा रही है और यहाँ पर दो साइड से जा ही रही है | उस साइड स्टेशन है वहां से यात्री चड्ते है और उतरते है ।

आ जैसा कि हम देख रहे हैं यहां पर सभी लोग स्टडी के लिए बैठे हुए हैं। सभी लोग पढ़ रहे हैं। सामने एक टीचर है जो ब्लैक बोर्ड पे सब बच्चों को समझा रहा है और यहां पर कम से कम दस से पंद्रह दस लोग हैं कम से कम जो कि स्टडी कर रहे हैं।